फुले रखे हुए हैं जो कि इसके अंदर एक ही बहुत ही पत्ती कच्ची मात्रा के अंदर--

कुछ लोगों के द्वारा डाक्यूमेंट्स लेकर हाथ के अंदर नजर आ रहा है कुछ व्यक्ति पास में खड़े जिसके हाथ मे एक थैली नजर आ रही है एक व्यक्ति बाइक के ऊपर चढ़कर जा रहा है।

है और इस से एक्सरसाइज की जाती है और तीन मशीने इस बिल्डिंग के अंदर रखी हुई है एक बिल्डिंग --

वहीं सेल बुक सेल शॉप है बहोत बड़ी जहां पे लोग खडे है और--

सीने बंधी हुई है सीनो के आगे दो व्यक्ति खड़े हैं दो व्यक्ति के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा है।